कुछ लोग रनिंग भी कर रहे हैं।

उसके एक तरफ कॉर्नर पर दो बोतल रखी हुई हैं।

ये स्कूल या कॉलेज है जो देखने में काफी बड़ा लग रहा--

ये कोई पार्क है जिसके किनारे किनारे बहोत पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये हिंदू धर्म का पूजा स्थल जैसा दिख रहा है जहां पर एक मूर्ति रखी हुई है।

के इस तरफ आगे की तरफ कुछ पेड़ पौधे--